और इसमें पानी भी स्विमिंग पूल में पानी भी साफ सुथरा लग --

पर काई जमीं हुई है। बहुत दूर तक बिल्डिंगे बनाई गयी हैं।

और उसके ऊपर एसी लगी हुई है काफ़ी दूसरे तीसरे फ्लोर की पिक्चर लग रही है किसी फ्लैट के नीचे भी बालकनी है इसके और पीछे पेड़ भी घना सा दिख रहा है।

एक देवी जी बैठी है। अपने पैरों पर किसी ई ई ईशामसीह जाने कौन है बैठा रखा है ।

ये फोटो एक शोपिंग मॉल की लग रही है। दुकान लग रही है सोने की बगल में उसके कोटक का बैंक का ऐड भी है। ऊपर फ्लैट भी है। पीछे की तरफ।

यह तो एक झील दिख रही है जोकि अलग-अलग दो जगह मे पानी भरा गया है। शायद यह मछली पालन है इसलिए मछली पाले रखी है बीच मे एक खम्बा जो वायरिंग --

ये एक रेस्टोरेंट है जो कि बर्गर किंग के नाम है इसका रेस्टोरेंट का देखो कितनी सफाई है यहाँ पर और कितने अच्छे डिजाइन किया गया है रेस्टोरेंट ।